झांजर लगे हुए हैं और ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक कांफ्रेंस चल रही है।

यहां बहुत सारे व्यक्ति एक टेबल और एक चेयर में बैठे हुए हैं।

तालाब की ओर देख रही है उन्होंने जींस और टी टॉप पहना है पिंक कलर का और सामने में उसके घास है छोटे-छोटे।

और हर एक कांच के डिब्बे में बहुत पुराने-पुराने सामान।

बहुत सारे पिलर्स नजर आ रहे हैं और पिलर्स के ऊपर एक छत है जो लोहे का है वो छत।

और पीछे की तरफ में सारे जितने भी व्यक्ति हैं सारे चेयर्स में बैठे है।

जैसे कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है धूप है।

जैसे कि मैं देख रही हूं ये एक सफेद रंग का मूर्ति है और ये मूर्ति मां मरियम और प्रभु यीशु मसीह का है।

जो मां जहाँ मां मरियम ने अपने पुत्र यीशु मसीह को गोद में लिए बैठे हुए हैं ।

जैसा कि मैं देख रही हूं यहां बहुत सारे कारपेट नजर आ रहे हैं डिजाइनर कारपेट्स पीछे की तरफ।

नेकलेस रखे हैं डेमो में और उसके पीछे साइड की तरफ में एक कबर्ड रखा हुआ है वाइट कलर का।

जैसे कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है यहां बहुत हरे-हरे पेड़ घास।

और मंदिर के बाहर टाइल्स लगे हैं वाइट कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे हरे।